यहाँ एक पार्टी में लोग आए हुए हैं ।

चेयर लगी हुई है सब प्लेट पे प्लेट में खाना लेके खा रहे हैं इन्जॉय कर रहे हैं। एक दूसरे से बाते कर रहे हैं।

यह एक बॉट है जो कि देखने मे बहुत ही सुंदर है इसमे तीन लोग बोटिंग कर रहे हैं।

आप ये जो पिक रहे है। एक दुकानदार है जिसमे कि वो अपने दुकान का भी इस पिक के साथ-साथ अपने दुकान को भी दिखा रहा है।

इस बैंक मे अपना बहुत ही खाता खुलवाते हैं खाता खुलवाते हैं पैसा जमा कराते हैं ओर जरूरत पड़ने पे निकालते भी है और बैंक कि सुविधा तो बहुत ही अच्छी है हमेशा इसमे नेटवर्क र-रहता है।

आप यहाँ व्यू देख रहे हैं लोग बोहोत सारे लोग आए हुए है घूमने आए हुए है ओर बोहोत ही सुंदर नजारा लग रहा है लोग एक दूसरे कि पिक्चर क्लिक कर रहे हैं घूम रहे हैं मस--

बोहोत ही सुंदर दो पहार के बीच मे एक फोटो खिचवाया है ये फोटो देखने मे बोहोत ही सुंदर लग रहा है।

कपल कि जोड़ी भी बोहोत ही सुंदर लग रही है दोनों बोहोत ही इन्जॉय कर रहे हैं जो कि हमलोग--

इस पीक मे आप देख रहे हैं कि एक आदमी मच्छी लेके बे-बैठा हुआ है ओर अपने कस्टमर का इंतजार कर रहा है कोई आए इनकी मच्छी को खरीदे इनकी मच्छी देखने मे तो बोहोत ही सुंदर लग रही है।

इस पिक मे देख रहे हैं कि ल यहां पे बिहार का आस्था पर्व छठ पर्व मनाया जा रहा है। जिस--

नहाए खाए होता है खरना होता है इसमे प्रसाद खाते ये बोहोत ही पावन पर्व से --